यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और कुछ आदमी में खड़े होकर यहां पर मछलियों की खरीदारी --

यहां पर एक तालाब लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके किनारे कुछ बाउंड्री बनी हुई है और सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

वह बैठे हुए हैं और यहां पर बहुत सी दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही है और लेब जांच यहां पर हो रही है।

भीड़ है यहां पर सभी ही लोग आपने आपने काम करते हुए आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ आदमी खड़े हुए हैं सामने की तरफ़ कुछ आदमी जा रहे हैं और --

कटर खुला हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और ए आदमी वहाँ पर जा रहे हैं एक बाइक रखी हुई यहाँ पर --

यहां पर एक झरना दिखाई दे रहा है और यहां पर खूब पेड पौधों की बोइले लगी हुई दिखाई दे रही है सामने से पानी आ रहा है और--

उसमें से एक चट्टानों के बीच से पानी निकल रहा हैयहां पर।

बानी हुई है और निचे कुछ पत्थर टूटे हुए डाले हुए हैं जो इसी चट्टान में से टूटे हुए है।

यहां पर एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जो मिटने की कगार पर है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं नीचे पूरा करकट डाला हुआ है और यह बिल्डिंग --

यहां पर कुछ लड़कियां बैठी हुई है और अपना स्कैच बना रही है स्कैच पेन से अपना प्रोजेक्ट बना रही है और कुछ लड़कियां खड़ी होकर --

से भर रहे हैं और यहां पर कुछ आदमी खड़े हुए होकर उनको देख रहे हैं।

यहां पर बहुत सी लाईटे दिखाई दे रही है और नीचे सफेद टायर्स है।

इसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच में से अंधेरा दिखाई दे रहा है यहां पर --

यहां पर तीन लोग खड़े हुए हैं जो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैंऔर पीछे की तरफ चलते हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक बोट है जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं एक चल रहा है और दूसरा इसको पकड़े हुए है।

यह है डबल मंजिल है ऊपर भी शटर लगे हुए हैं नीचे की साइड भी शटर लगे हुए है और टू व्हीलर रखी हुई दिखाई दे रही है।

अ भी डाले हुए है यहां पे और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है दूर दूर तक कोई नही दिखाई दे रहा हैं।